इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो सफेद टी-शर्ट पहने हुए है काली जीन्स पहने हुए और आसमान हमें इसमें दिखाई दे रहा है एक छतरी भी दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़-पौधे नज़र आ रहे है पेड़-पौधे हरे रंग के है।

में इस फोटो में दो पटरियाँ हैं एक कुत्ता इसपे घूम रहा है साइड में हरी घास उगी हुई है।

एक रोड की तस्वीर है जिसमें एक साइड में सफ़ेद कलर की कार खड़ी हुई है एक व्यक्ति उसमें से उतर रहा है।

ये एक स्टेशन की तस्वीर है इसमें हमे कुछ लाल सीटे कुछ नीली सीटे कुछ व्यक्ति नजर आरहै है एक पेड़ लगा हुए कुछ पेड़ लगे हुए है जो की हरे रंग के है।